टब टाइप में रखा हुआ है क कचरा फेंकने के लिए।

फॅमिली मार्ट है यहाँ पे अपना फैमिली के साथ आ सकते हैं और काफी बड़ा और काफी डिज़ाइन करके बनाया गया है।

ब्लैक कलर और ब्लू कलर और येलो कलर रेड कलर से --

ग्राउंड में उसके भीड़ लगा हुआ है सब्जी लगा हुआ है।

बच्चों को साइड में खड़ा किया है।

में छोटा-सा ग घर बनाया गया है कुछ समान रखा गया है।

बैठ के तो पेंट किया हुआ और काफी बढ़िया घर लग रहा है देखने में।

और काफी सीधा से ब ढका गया है।

और यहां पर कुर्सी लगाया गया है व्हाइट कलर का बैठने के लिए।

पहले सब को पैक कर रहे है और ऊपर में भी काम चल रहा है नीचे में भी बहुत सारा काम हो चुका है।

और यहाँ पर अंदर में फ्रिज भी है जिसमें काफी सारा ठंडा भरा हुआ है।